जिसका नाम बिगनन बुक सेंटर सनेस स्टैशनेरी है हॉलशेल बुक सेलर्स और इसके बाहर बहुत आदमी खड़ा है। एक आदमी हेलमेट लगा के खड़ा है जो फोन में देख रहा है और इसके बगल में एक लड़की खड़ी है।

यह एक गैरेज है जिसमें गाड़ी बनाया जाता है और एक गाड़ी लगा हुआ है जो रेड कलर का है और इसमें चार चक्का है।

जहाँ आदमी सब समान लेने गया हुआ है।

यह खाना है। इस खाने में पनीर का सब्जी मिक्स सब्जी दाल है।

और सब अपना-अपना हाथ ऊपर किए --